दो कार भी दिख रही है और फूल भी दिख रहा है और पेड़ पौधे भी दिख रही है।

और एक कंप्यूटर दिख रहा है और दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी दिख रही है।

अंदर में एक दरवाजा भी दिख रहा है और लाइट भी दिख रहा है।

इस घर के अंदर दो ए_सी दिख रहे हैं।

और एक बगल में पौधा भी दिख रहा है।

उसके बाहर एक आदमी खड़ा दिख रहा है और उसके बगल में एक शट्टर दिख रहा है।

और लाल और काला कलर दिख रहा है और लाइट भी दिख रहा है।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

यह एक किला है और यहां पर दो कार दिख रही है।